ये डी.ऐ.वी. पब्लिक स्कूल का पिक्चर है और यहाँ पे रिपब्लिक डे में झंडा फहराया गया है और झंडे को फहरा कर के फिर उतार लेना सही है नही तो इससे झंडे का अपमान होता है। ये टीचर को ये सब चीज में ध्यान देना चाहिए।

ये साईकिल के पहिये के ऊपर में इस टेबल का अ टेबल अ बनाया गया --